इस पिक्चर में हम लोग देख सकता है एक लाइट बल्ब है जहां से लाइट आ रहा है।

और वहां पर एक समान रखा हुआ है वहां पर बहोत अच्छे से डिजाइन बनाया हुआ है।

और अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है पिक्चर्स भी रखा हुआ है फ्रेम में।

वहां पर ग्रीन ग्रासेस भी बहुत सारा है और वहां पर--

और सब की दुकान में एक बंबू वहां पर दिया हुआ है और दुकान खोलने के लिए और--

वहां का पोस में रस्सी से बांध के डिजाइन किया हुआ है।

और वहां का बेंच में वहां पर एक हेल्मेट रखा हुआ है।

और वहां पर लाइटिंग भी दिया हुआ है।

और सब काला लोन पेंट लगा के हैं हम लोग देख सकता है नीचे में फ्लोर है।

इस दुकान के अंदर हम लोग बहुत सारे सामान दिखाई देगा।

इस पिक्चर में हम लोग यहां पर ड्राई लेन दिखाई देगा।

और उस नदी के किनारे में हम देख सकता है एक बड़ा सा पत्थर भी है।